इसके पास एक लड़की खड़ी है जो की साड़ी पहनी हुई है ।

यह दृश्य एक फैक्ट्री के अंदर की है जहां पे कुछ लकड़ी का मशीन रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा जिम का मशीन रखा हुआ है।

अंदर कुछ लोग जा रहे हैं।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट की है यहां पे नाइट व्यू है।

यहां गमले पे कुछ पौधे लगे हुए हैं और कु कुछ पौधे ऊपर गमले पर टंगे हुए हैं।

यहां दृश्य एक स्कूल के कॉरिडोर की है जहां पे रेलिंग लगा हुआ है।

यहां पे सीढ़ी है जिस पे लाल रंग का पेंट किया हुआ है।

फर्श पे बहोत सारा मैट बिछा हुआ है जिसमें बच्चे अपना अपना योगा कर रहे हैं ।

यह दृश्य एक बिल्डिंग की है जो की सफेद रंग की है।

राइट साइड में पेड़ है और यहां कुछ लोग है ।

एक पेड़ है जो कि सूखा हुआ है उस पे कुछ पक्षी बैठे हुए हैं।

यहा झुला बना हुआ है।

यहां पे कांच का काउंटर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ कुछ समाने रखी हुई है।

दीवाल पर पोस्टर्स लगी हुई है।